इन बच्चियों को एक टीचर यहाँ पर सीखा रही हैं।

इस सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां जाती है।

यह एक बैंक है।

इस बैंक से लोगों को बहुत सारी सुविधाएँ मिल --

इस प्लेटफार्म पर ट्रेन आकर रूकती है।

और इन मंदिरों में बहुत सारे मूर्तियां है।

यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए आते हैं।

इस अस्पताल में बहुत सारे लोग इलाज कराने के लिए आते है।

इस अस्पतल के चारो ओर --

और इस पहाड़ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं।

ये होटल एकदम सड़क के किनारे पर है।

इस होटल के चारो और लोह --

समानो को खरीदने के लिए आते है।

इस गेट के अंदर में बहोत सारे घर भी बने हुए हैं।

इस नाव पर एक लड़का खड़ा है और यह अपनी फोटो खींचा रहा है।